इस तस्वीर में हमें बहोत सारी गाड़ियां दिख रही हैं।

इस छवि में हमें बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

इस छवि में हमें एक सीढ़ियां दिख रही है।

छवि में हमें इलेक्ट्रिक पोल के तार दिख रहे हैं।

छवि में हमें सफेद कलर के धारियां दिख रही है।

छवि में हमें एक ए_सी दिख रहा है।

दिखाए गए तस्वीर में हमें एक बड़ा सा इमारत दिखाया गया है।

इस फोटो में हमें एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाया गया है।

इस छवि में हम एक बड़ा सा नीला टीना दिख रहा है।